और इसके ऊपर नाम जसलमेर लाल कलर का इंग्लिश में लिखा हुआ है।

पर डिजाइन छोटी छोटी बढ़िया कर रखी--

पीछे पहाड़ है पहाड़ के ऊपर किला है।